यहाँ पर काफी स्कूल के बच्चे जो है वो बैठे हुए दिख रहे है और हां कोई गाईड वहाँ पे आये हुए दिख रहे है।